ठहरे हुए हैं और ये अपार्टमेंट दिख रहा है फर्शी है यहां पे और लाइटिंग है।

हरा कलर का एक दरवाजा है औरत एक दुपट्टा पहने हुए है ब्राउन --

यहां पे साइकिल है साइकिल अभी नवी है उसको पन्नी लगाया हुआ है गियर वाली साइकिल है दो तीन साइकिलस है।

बेच रहा है यहां पे चार आदमी देख रहे हैं यहां फिशिंग है जो मरे हुए हैं।

और यहां पे लाइट भी चालू है और यहां पे उसकी छत है और यहां पे टेबल है रखा हुआ जहां पे बैठ सकते हैं।

जमीन है और यहां पे--

यहां पे एक लेडिस है कुछ सामान ले रही है जो डेकोरेशन के लिए बनाया हुआ है। पंखा चालू है लाइट चालू है।

ये हैप्पी बर्थडे का डेकोरेशंस है जो बलून से सजावट करे हुए बलू बलून का कलर नीला व्हाइट एंड पिंक कलर है।

और एक लड़का है जो वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है अपने अपने सब लैपटॉप में काम कर रहे हैं जो कुर्सी पर बैठ के--

ये एक मशीन है सीमेंट और बालू और खड़क को मिलाकर--

फर्स्ट जो कमरा है उसके ऊपर कपड़े भी है उसके ऊपर बिल्डिंग भी है जो घर में दिखावा है।

मिल रही है टॉफी है जेंट्स का सामान दिखा रहा है है यहाँ पे।

यहाँं पे एक डांस समारोह हैं जो बच्चे डांस कर रहे हैं उनको सिखाया जा रहा हैं यहाँं पे गर्ल्स एंड बॉयज दोनों भी हैं वहाँं पे एक ट्रेनर हैं।

ड्रैगन्स की है पंखा है कुक की है और यहाँ पे भी है दरवाज़ा है वाइट कलर का।

यहाँ पर सेनेटाइज करे जा रहां है एक आदमी है जो सब तरफ सेनेटाइज कर रहा है यहाँ पर दो टेबल्स है।

जो कोई नहीं टेबल्स पे कुर्सियां खाली हैं और यहां पे कैरी बैग रखी है ब्लैक कलर की--

ये पानी में उतरी नहीं है सब के सब सर पर पल्लो है पीछे वो--